और वहाँ पर एक कार नजर आ रही है जो ग्रे कलर की है। काफी सारे बाइक्स वहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग वहाँ नजर आ रहे हैं और आसमान भी साफ नजर आ रहा है।

और इलेक्ट्रिक वायर्स दिखाई दे रहे हैं और काफी घने पेड़ वहाँ पर नजर आ रहे हैं |

यहाँ पर काफी ज्यादा इमारतें नज़र आ रही हैं और हरे पेड़ नज़र आ रहें है और ऊँची चोटी पर जो है वहां पर भी काफी ज्यादा पेड़ें दिखाई दे रही हैं।

वन दिखाई दे रहा है जहां पर घांस नजर आ रही है लाल मिट्टी नजर आ रही है अ काफी ज्यादा बिल्डिंगस दिखाई दे रही है और सामने पर्वत भी दिखाई दे रहा है।

काफी ज़ादा मात्रा में हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर तालाब या नदी का पानी दिखाई दे रहा है।